यह तालाब लम्बाई में है ।

यह एक एकेडेमी है। यह एकेडेमी मेन डीप एकेडेमी है। यह राजेन्द्र नगर मार्केटा जमुई में है। यह सी_बी_एस_सी अप प्लस टू वाले बच्चों के लिए है।

यह एक झरना है । यह झरना ऊपर से पानी गिर रहा है । यहाँ पे बहुत से लोग अपनी मोवाईल में इस दृश्य को कैद कर रहे हैं क्योंकि यह दृश्य देखने में अत्यंत ही सुंदर है ।

यह एक टेंसफॉर्मर है। यह टेंसफॉर्मर अभी नया बना हुआ है। यह टेंसफॉर्मर में अभी तार-वार जोड़ी नहीं गई है। यह टेंसफॉर्मर का कलर --